यहां पर हर ऐज ग्रुप के लोग मिडिल ऐज --

बैठे हुए हैं इस प्रोजेक्टर पे --

ज्यादा रॉक्स पाए जाती है क्यूंकि ये इस पिक्चर में चारो तरफ से पत्थर ही पत्थर है।

आगे चेयर रखे हुए है बहुत सारे लोग है।

जहाँ पे कुछ काम हो रहा है एक फीमेल है एक मेल है मेल ओल्ड एज का है।

वो रोप कार के किसी पार्ट में बंधा हुआ है।

बच्चो के ड्रेस से लग रहा है कि ये केंद्रीय विद्यालय का हो सकता है।

यहां पे जो फादर है वो --

एक चेयर देख सकते है यहां रिसेप्शन सैनिटाइजर का डब्बा रखा हुआ है यहां रिसेप्शन का सीलिंग पे --

व्हाइट कैप व्हाइट शर्ट और ब्लू कलर के पैन्ट्स पहन रखे हैं उसने अपने पैन्ट्स को फोल्ड कर रखा है।

दस से पंद्रह सेंटीमीटर के ऊंचाई पे होंगे ये फ्लावर्स व्हाइट और पिंक कलर के है यहां पे दीवार है दीवार --

ये फोटो किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन का या किसी फंक्शन का होगा।

वो शर्ट एलन की है और सबसे पीछे में एक आदमी जो खड़ा है जो दिख रहा है मुझे --

ये फोटो स्टेशन की है हाजीपुर जंक्शन की है।

हाजीपुर जंक्शन के सामने रिक्शा चालक अपने रिक्सा को घुमा रहा है।

किसी सुपर मार्केट का भी हो सकता है।

बल्ब लगे हुए हैं बल्ब व्हाइट कलर के हैं और सारे बल्ब जल रहे हैं मिरर के सामने में एक सैनिटाइजर का डब्बा रखा है।